यहां पर विष्णु अमृतस्तरी नान बोलके एक --

अच्छा लग रहा है रंग बिरंगे के कपड़े पहने हुए ये आदमी लोग--

अच्छा लग रहा है एक दरवाजा है दरवाजे में से उजाला अंदर आ रहा है।

यहां पर एक बहोत बड़ी नदी है नदी का पानी--

ये जो है ये विज़न --

यहाँ जाए क्रॉस रिवर मॉल के एक एक मॉल का नाम है मॉल का जो --